और रास्ता के यूं ही पास में एक गेट दिखाई दे रहा हैं।

और उस गेट पे भी कुछ लिखा है जो कि क्लियर नहीं है।

और आसमान भी क्लियर से नजर आ रहा है।

वे सभी बाक्स वाक्स में रखा हुआ है।

यहां गाड़ी का एसेसरीज छोटा मोटा सामान रखा गया है।

और रास्ते के बगल में भी नदियां नजर आ रही है।

जोकि हिन्दुओं का भगवान है।

यहाँ मूर्ति के सामने में आदमी नजर आ रहे है।

उस मकान के बगल में भी बहुत सारा पेड़ पौधा नजर आ रहा है।

इसी के साथ पीछे में एक पत्थर दिखाई दिए दे रहे--

इस पेज के फ्रंट पार्ट में मोटरसाइकिल और उसके पीछे में स्कूटी रखा गया है।

ये एक सिनेमा हॉल है।

यहां मुझे एक आदमी खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं।

इसके नीचे में भी बहुत सारा पानिया नजर आ रही है।

और मुझे यहाँ में आदमी लोग भी चलते हुए नजर आ रहा है।

यहां बहोत सारा मछलियां नजर आ रहा है।

और एक गाड़ी का डिग्गी खोल के नजर आ रहा है।

यहां में मुझे एक बंदा खरा होते हुए नजर आ रहे हैं।

यह मुझे जिम की तरह नजर आ रहे हैं।

यहां में मुझे बहुत सारा लोग दिखाई दे रहे हैं।

और मुझे यहां में जो लोहा जो दिख रहे ओ भी बहोत पुराना नजर आ--

यहां मुझे कुछ नया सा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है।

यहां हमें बहुत सारा ड्रम दिखाई दे रहा है।

उसी के साथ मिट्टी नजर--

मुझे बहुत सारा ब्रा दिखाई दे रहे है।

सी के साथ यहां पे नदिया भी नजर आ रहे है।